इसमें हमें बहोत सारी कुर्सियां पड़ी हुई नजर--

इस दृश्य में हमें बहोत सारी जे_सी_बी मशीनस् दिख रही हैं।

इसमें एक एसी भी लगा हुआ दिख रहा हैं।

बहोत सारी लाईटे भी लगी है।

देखने से ये यह दुकान लग रही हैं।

हमें उसमें फूलों की मलाई भी नज--

उसके आसपास हमे बहोत सारी वृक्ष दिखाई दे रहें हैं।

यह दृश्य हमें किसी दुकान का दिखाया जा रहा है।

इस दृश्य मे हमे बहोत बड़ा ग्राउंड नजर आ रहा है।

देखने से यह तस्वीर हमें किसी शे--

देखने से यह दृश्य किसी मशीन का लग रहा है।

इसमें हमें टेबल पर कंप्यूटर्स पड़े हुए दिखाई दे रहे हैं।